और सामने कुछ लकड़िया दिख रहि है और ऊपर आसमान दिख रहा है।

पत्थरो पे से सफ़ेद पानी गिर रहा है जो सफ़ेद दिख रहा है और पत्थर चिकने --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफ़ेद कलर की है जिसमे सामने छत बनी हुई है और ऊपर--

सामने टेबल दिख रही है सामने वाली टेबल पर--

दो लाल कटोरी रखी हुई है और इसके सामने एक और टेबल है जिसमें जग और--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो पिले कलर की है और अंदर--

सामने एक दूकान दिख रही है जिसमे उपर भी लाल बोर्ड लगा है जिसपे सफेद कलर से एयरटेल फॉर जी --

बुक वर्ल्ड लिखा हुआ है नीचे टेबल बनी है जिस पे एक कंप्यूटर दिख रहा है।

और सामने दीवाल है जो क्रीम कलर की है।

सामने कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं जो सफेद क्रीम हैं।

और साइड में एक गेट के टेबल बनी हुई है और कुछ पेड़ दिख रहे है और निचे में मिट्टी गिट्टी रेत --

सामने एक गेट दिख रहा है जो ऊपर कांच का और नीचे--

और गेट के बहार कुछ साइड में कुछ आदमी दिख रहे है मोटरसाइकिल दिख रही है।

बैठे हुए हैं जो सेवरे सफेद कपड़े पहने हैं पीछे वाले आदमी की--

है और पीछे सफ़ेद कलर दिवार--

छोटा मंदिर बना है जिसके अंदर एक मूर्ति दिख रही है और--

कुर्सी है जिसके पीछे एक कांच की रैक है जिस के अंदर बोटल --

लगी हुई है और दीवार पर टी_वी लगी हुई है।

लाइट लगी है और कुछ बड़े बड़े पेड़ है और नीचे--

सामने बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर एक नीला बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें सफेद कलर से--

पोस्टर है जिसमे ऐ लिखा हुआ है--

रखे है और एक आदमी खड़ा हुआ है एक पेड़ है।

और नीचे फर्श चिकना है ऊपर छत में लाल कलर दिख रहा है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और कुर्सियां काले कलर की हैं कांच के गेट लगे--

दिख रही है इसके हाथ में लाल पनि है और--

ग्रे कलर की है और सर्किट लगी हुई है।

ग्रीन है और साइड में छोटा मंदिर बना है सीढ़िया बनी है तीन--

पड़ा हुआ है साइड में कुछ टेबल और है।

बस खड़ी हुई है कारे सफेद कलर की है और बस पीले कलर की सामने--

दिख रहा है अंदर कुछ आदमी दिखाई दे रहे है।

एक चोक्लेटी कलर होता है और दो गुब उम्म रंग भी रंगे फूलो के गुलदस्ते--

यह ऑरेंज चॉकलेटी और सफेद कलर है बीच में बड़ा फूल बना हुआ है।

और चुरीया बनी है जो ग्रीन कलर की है ऊपर छत--

चॉकलेएटी ग्रे कलर है और बीच में हरा कलर दिख रहा है दोनों साइड दीवा--

सामने बड़ी नदी दिख रही है जिसमे पानी है और बिच में एक फुआरा--

लिखवाइदे रहे है ऊपर नीला आसमान दिख रहा--

सामने एक स्विमिंग पूल है। जिसका पानी नीला दिखाई दे रहा है। जिसके चारों ओर ग्रे --

फुबरिया अंदर गिर रही है कुछ आदमी इसमें अंदर है और कुछ--

कलर के फूल लगे है और सामने नीचे हरी घास है और --

पीले फूल हैं और साइड में लकड़ी की जाली बनी है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

पिले कलर का है इसके आगे एक कार दिखाई दे रही है और साइड में एक--

सामने एक आदमी है जो ऊपर पथरो की गुफा है जिसमे--

लोवर जूते पहने हुए हैं पत्थरों की--

वह से फोटो खींच रहा है और साइड में--

सामने एक बिल्डिंग है जो ऑरेंज कलर की है और रेलिंग --